एंड यहां पे पिंक कलर के फ्लावर्स लगे हुए है।

हैं जिम है मशीने लगी हुई हैं।

--और ये एक पार्क है जिसके ऊपर हिप्पोपोटेमस का स्टैचू लगाया है उसमें से पानी निकल रहा है।

ये एक मैदान है जहां पे स्लाइडर लगा हुआ है बच्चों को फिसलने के लिए दोनों तरफ है जिसका कलर ब्लैक और रेड है और उसमें दो बच्चे भी है जो फिसल रहे है।

एक मैदान है और इसके पास ऊपर स्लाइडर लगी हुई है बच्चों को फिसलने के लिए| येलो और ब्लू कलर की है और फ्लोर का कलर है कच्ची मिट्टी का दिखाई दे रहा है।

ये एक चर्च है जिस पे शेड डला हुआ है एंड काफी सारी औरतें बच्चे और आदमी बूढ़े खड़े हुए हैं | इन्होने रेड कलर का एक झोला लिया हुआ है।